मुझे इस फोटो में एक ऑरेंज कलर की स्टूल भी नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में बच्चों बच्चे लोग योग करते हुए नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में कपड़ा सुखाते हुए नजर आ रहा है।

मुझे यहां एक नेटवर्क टावर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां लोहित डिस्ट्रिक तेजू दिखाई दे रहा है साइन बोर्ड में।

मुझे यहां ओम की सिंबल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक लाइट बल्ब भी नजर आ रहा है।

दीवार में टांगते हुए एक एयर कंडीशनर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे और एक ग्रास घास दिखाई दे रहा है।

मुझे बगल में एक डिस्पोजल ग्लास भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में लड़की लोग हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में ढेर सारे सीलिंग फैन दिखाई दे रहे --

मुझे इस चित्र में ढेर सारे फोतो फ्रेम भी नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में हरे रंग की शटर भी नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में लेडिस सलून भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां एक बुद्धा का सर दिखाई दे रहा है।